लोहे नजर आ रहे हैं नीचे मिट्टी पर पड़ा हुआ नजर आ रहा --

यहां बहुत सारे काफी बुक और कैलेंडर रखे हुए है।